बाइक रखी हुई है दीवाल के सामने एक साइकिल है दुकान के सामने वि-के एल्युमीनियम ग्लास लिखा हुआ है वीडॉल लिखा हुआ है और वैशाली डीजल वर्कशॉप लिखा हुआ है।

यहाँ पे एक ऑटो लगा हुआ है जो नीले और काले रंग का है। पीछे उसके गाड़ी भी रखी हुई---